यह एक आने-जाने का रास्ता है रास्ते के किनारे एक बाउंड्री दी गई है बाउंड्री में लोहे के रड लगाए है।

यहाँ दो लड़का है उन्होंने बैग टांगे हुए हैं दुकान में एक बूढ़ा आदमी बैठा है।

यह एक कपड़ों की दुकान है यहाँ छोटे-छोटे बच्चों के फ्रॉक टॉप स्कर्ट लोअर सब कुछ मिल रहे हैं।

यहाँ बहोत सारे झूले है। यहाँ से स्लाइडर भी है। झूले पे दो बच्चे खड़े है। एक बच्चे ने मास्क लगाया हुआ है। झूले के पास बहोत सारे पेड़ पौधे लगे है।

यह एक फल और सब्जी की दुकान है इसकी दीवारें गुलाबी रंग की है यहा बहुत सारे फल-सब्जी बिक रहे हैं जैसे गाजर लह्सुन गोभी और भी बहुत कुछ।